किड्स जोन इंग्लिश मीडियम स्कूल दिखाई दे रहा हा है और तो --

तीन चार किए है सीढ़ी दिख रही है।

का नाम दिख रहो हो गुलाबी कलर कर रखा है कार दिख रही है।

खम्बा दिख रहा हा है तार दिख रही ही है रेलिंग दिख रही।